आकाश से धूप आ रही है।

एक लड़का नमाज पढ़ रहा है।

यह एक गार्डन है।

बहुत सारे जालियों से घेरा हुआ हैं।

पंखे भी लगे हुए हैं जो चल रहे हैं।

एक मग है बहुत सारे मछलियां हैं।

पर्दा लगी हुई है लाइट लगी हुई है।

कुछ लोग बेचने वाले भी हैं।